यहाँ पर मुझे कछुआ नजर आ रहा है कछुआ जो है वो ग्रीन ग्रास में है।

और स्टेयर्स दिखाई दे रही है वहाँ पर और थोड़े से पत्थर पड़े हुए है।

टेज के ऊपर तीन जेंट्स खड़े है।

और उनके सामने स्टेयर्स दिख रही है स्टेयर्स से अंदर एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

रोड पर मुझे एक बाइक का बस मिरर दिखाई दे रहा है और एक बाइक आधी दिखाई दे रही है और एक बाइक से एक आंटी और अंकल जा रहे है ।